यहां पे लाइट लगाए गए हैं।

यहां पे एक बड़ा लाइट लगाया गया है जो सफेद कलर में है।

बहुत सारे फूल सजाए गये हैं।

यहां पे बहुत नाव हैं जो अलग अलग है।

यह एक पेट्रोल पंप है।

बहुत अलग अलग गाड़ी है जो गाड़ी में लाइट लगाए गए हैं।

यह एक कपड़ा का दुकान है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां पे पोस्टर पर लिखा गया है भागवत गीता फैमिली रेस्टोरेंट ।

यहां पे एक महिलाएं बैठे गये हैं महिलाएं कपड़े पहने हुए हैं।

सी_एन_जी अवे अवेलेबल है यहां पे हिंदी पर भी लिखे गए हैं ।

यह एक मिल है यहां पे बहुत सामान है।

सब आदमी टोपी पहने हुए हैं।

यहां पे बहुत आदमी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे बहोत सरसों का सामान रखाए गए हैं।

की गैस सिलेंडर रखा गया है जो लाल कलर में है।

यहां पे आदमी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए है।

बहुत लड़का है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे जिम करने का बहुत समान है।

यहां पे बहुत पेड़ हैं जो हरा कलर में है यहां पे पोस्टर पे लिखे गए हैं वेलकम ।

ब्रिज है जो सफेद कलर में है।

बहुत गाड़ी है जो अलग अलग है।

यहां पे बहुत लाइट लगाये गये है जो सफेद कलर में है।

लाइट लगाए गए हैं जो सफेद कलर में है।

लाइट लगाए गये है झिकमीकिया।

यहा पे दुकान है यहा पे पोस्टर पर लाइट लगाई गए है।

यहाँ पे एक पंखा लगाया गया है जो काला कलर में है।

आदमी है जो अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

आम का भी पेड़ है जो हरा कलर में है।

बहोत पोस्टर लगाए गए हैं पोस्टर पर लिखे गए हैं।

बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे सब अलग अलग कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पे शेटर है एक शेटर बंद है।

बहुत सामान रखें गए हैं और यहां पे बहुत घर है।